और यह घर सुफेद कलर का बना हुआ है।

और अह आगे बहुत सारा हरा भरा मैदान पड़ा है।

जो पास्टर जी इनको माइक के द्वारा बता रहे हैं।

यह सती की पूजा कर रहे हैं।

यहां बहुत सारे फल फ्रूट चढ़ा रहे हैं।

चुन्नियों से और गुब्बारों से और टेंट से यहां पर सजाया गया है।

कुछ गाड़ी के साथ तेल गिरवा रहे है।

और इसके अंदर महिला व पुरुष पढ़ रहे हैं।

और ए दो तिरंगे भी लगे हुए हैं।

इस पर ओमप्रकाश स्टेशनरी लिखा हुआ है।

साइड की ओर एक पतंजलि का भी बोर्ड लगा हुआ है।

और साइड में डॉक्टर की भी दुकान है।

वह फ्रिज लगे हुए हैं।

और एक कागज पड़ा हुआ है और एक पेड़ भी है और पीछे के मंदिर भी है।

यह एक पहाड़ी द्रश्य है।

और पेट्रोल पंपे पर एक नीले कलर की बस व बहुत सारी मोटरसाइकल खड़ी हुई है और बहुत सारे व्यक्ति भी वहां पर खड़े हुए हैं।

जहां एक छोटा बच्चा अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

और एक कांच की बोतल भी रखी हुई है।

जिसमें पीछे की ओर दो ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई है।

यहां मिल्टन का बहुत सारा बर्तन का सामान रखा हुआ है औ--

और यहां हरे कलर की ग्रिल भी लगी हुई है।

जहां बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

और सर्फ एक्सेल व टाइड जैसे सरफ़ भी यहां पर रखे हुए हैं।

और एक शटर से बड़ी दुकान भी है।

और यहां बहुत सारी लकड़ी की कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

और कुछ सामान गत्तो में रखे हुए हैं।

यह एक सती भोजन है।

के गेट पर एक मोटरसाइकिल व एक एक्टिवाव के साथ एक महिला खड़ी हुई है।

जहा ए_आर_टी सेंटर सफेद कलर में लिखा हुआ है।

वाहय रोगी विभाग हिंदी में लिखा हुआ है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

यह एक शादी का दृश्य है।

जहां पीछे एक सफेद कलर की मैट वह कुर्सियों पर बहुत सारे पुरुष बैठे हुए हैं।

जहां लाल कलर का एक पेड़ व हरे कलर के कुछ पेड़ लगे हुए हैं।